कुछ पर्वत दिखाई दे रहे हैं जो बड़े बड़े ईंटों से बने हुए हैं।

के ऊपर एक हरे कलर का कपड़ा लटके हुए दिखाई दे रहा है।

और इसके ऊपर कुछ सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बोर्ड पर पीले अक्षरों में ऑक्सीजन कैफे लिखा हुआ है।

और या पे एक सफेद कलर की लाइट लगी हुई है अंदर की ओर।

के साइड में रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

आगे की तरफ एक मिट्टी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर छोटी हरि झाड़पुर दिखाई दे रही है।

और मेज पर रखे कुछ पैकिंग सफेद कलर की टी-शर्टे दिखाई दे रही है।

पे इंग्लिश में सुजुकी लिखा हुआ है।

कुछ आदमियों ने सर पे हेलमेट और एक लड़के ने साथ में हेलमेट लगे हुए दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ हरे रंग का पेंट हो रखा है।

नीचे की तरफ बहुत सारी बाल्टियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक आदमी लाल कलर की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ सफेद कलर की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं।

यहां पे इंग्लिश में नीचे की ओर रजवाड़ा फॉर्म लिखा दिखाई दे रहा है।

इनके ऊपर रंग बिरंगे पत्तोदर लाल व पीले फूल लगे हैं व पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

इसने गले में पट्टू डाले हुए हैं वे सर पर टोपा ओढे हुए है।

साइड में एक फोन रखे हुए हैं वे स्विच बने हुए हैं।

बीच में एक सफेद कलर का पर्दा बने हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ एक मशीन दिखाई दे रही है।

और नीचे की तरफ बहुत सारी डिजाइनिंग घासों से हो रखी--

पीछे की तरफ कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी ने गले में प्लस का सीन परे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ इंग्लिश में स्कूल ड्रेस लगे हुए दिखाई दे रहा है।

मुर्गियों के रंग सफेद है वे कुछ मुर्गी बैठे हुए वे कुछ मुर्गी खड़े हुए दिखाई दे रही है।

जो आदमी ने सर पे कपड़ा डाले हुए हैं।

एक गाली का इंजन दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

कुछ लकड़ी की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

कमरे की तरफ कुछ पर्दे दिखाई दे रहे है।

बारों का रंग सफेद व ऑरेंज है।

नीचे बहोत सारे लोहे के पील पिलर लगे हुए हैं।

यहां पर एक ऊपर की ओर जाते हुए सीढ़ी दिखाई दे रही--

ऊपर कि तरफ़ एक घड़ी दिखाई दे रही है जो सफेद में नीले कलर कि है।

व उसके डोर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सारी मेजे व सोफे पड़े हुए हैं।

आदमियों ने हाथ में कुछ चाबुक ले रखे हैं चाबुक का रंग लाल--

यहां पर एक स्टील के बोड पर हरे रंग के व्यायाम शाला लिखा हुआ है।

नीचे की तरफ पार्क में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बैठने के लिए सीमेंट की एक बनी हुई दिखाई दे रही हैं।